जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बहोत सुंदर बहोत ही बडीया हमको दुकाने दिखी चुकी बहोत ही अच्छी बहुत ही प्यारी दिख रही है बहुत ही सुंदर दिख रही है।

'' दुकाने हमको बहुत सारी दिख रही बहुत ही बढीया दुकान दिख रही है अवलोन मेन्स सैलून कर के एक बोर्ड लगाया जो नीला कलर का दिख रहा है सफेद अक्षरो मे नाम लिखा हुआ दिख रहा है पीछे और भी दुकान दिख रही वो भी बहुत ही बढीया लग रही है नीचे और भी दुकान दिख चुकी बहोत ही बढीया बहुत ही सुंदर लग रही बाइके दिख रही कार दिख रही जो की --''

जैसा कि हम देख सकते है सामने बहुत ही सुंदर बहुत हि बड़िया नजारा दिख रहा हम देख सकते है हमको एक सामने भवन दिख रहा जो की पुराना सरकारी भवन जैसा दिख रहा जो की बहुत ही बड़िया लग रहा है।

नीचे हमको पेड़ दिख रहे जो की हरे हरे दिख रहे जो की बहुत ही बड़िया पेड़ दिख रही नीचे हमको रास्ता दिख रहा है जो की बहुत ही बड़िया अच्छा दिख रहा।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

बहुत ही अच्छी हमको दीवार दिख रही है ऊपर हमको नाम लिखा हुआ दिख रहा है जो की सोलापूर महाराष्ट्र लिखा हुआ दिख रहा मॅप बना हुआ जो की बहुत ही बड़िया मॅप दिख रहा बहुत ही सुंदर मॅप दिख रहा है। हमको टेबल दिख रहा नीचे कुर्सिया दिख रही जिस पर हमको पेपर रखे हुए दिख--

इसमे हमको सैमसंग की दुकान दिख रही जो की नीले कलर का बोर्ड लगा है सफ़ेद अक्षरों में नाम लिखा हुआ दिख रहा है पास मे और भी दुकाने दिख रही जिसमे हमको साड़ी की दुकान दिख रही हमको बिल्डिंग भी दिख रही पास मे जो की बहुत बड़ी दिख रही कुछ दुकाने दिख रही मार्केट दिख रहा है सॉक्स पड़े हुए दिख रहे नीचे बच्चो--

वो गेट दिख रहा है जो की लोहे का दिख रहा है जो की खुला हुआ दिख रहा है राइट साइड पेड़ दिख रहे है जो की हरे हरे दिख रहे है साइड मे हमको वो जाली लगी हुई दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत बड़िया और बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा एक बैनर दिख रा जो की सफ़ेद कलर का बैनर दिख रहा है जिस पर एक आदमी का फोटो बना हुआ दिख रा जिस पे हिन्दी भाषा और मराठी भाषा मे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है जो की बहुत बढ़िया लग रहा है।

बहुत ही अच्छा बोर्ड दिख रहा है दो बोर्ड है पीला और ग्रे कलर का दिख रहा है एक का गेट खुला हुआ जो एक का गेट बंद दिख रहा एक का गेट आधा खुला है एक का गेट पूरा खुला हुआ दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़िया हमको हॉल दिख रहा है जो की स्कूल जैसा भवन दिख रहा जो की बहुत ही बड़िया लग रहा है यह हमको सामने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़िया भवन दिख रहा महाविद्यालय सोलापुर दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है।